गाय मुझे काले कलर रंग की दिखाई दे रही है।

सामने मुझे कांच का मिरर लगा हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे--

मुझे इस फोटो में सामने एक घर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में सामने एक सड़क दिखाई दे रही है।

और मुझे इस फोटो में कनक पैलेस लिखा हुआ दिखाई--

सामने मुझे गणपति बप्पा की मूर्ति रखी हुई नजर आ रही है।

सामने मुझे एक जस्ट ट्राई का बोर्ड लगा नजर आ रहा है।

और सामने मुझे कुछ बॉक्सेस रखे दिखाई दे रहे है और एक हरा जूता दिखाई दे रहा--

सामने मुझे मिठाइयां रखी हुई दिखाई दे रही हैं।